एक दुकान है। यह दुकान बोहोत ही बड़ा है। इस दुकान में बोहोत सारे गोडपोछ्नी असम एवं बोहोत सुंदर-सुंदर सामान यहाँ बिकते हैं।

यहाँ पर ब्रेड बिस्कीट चोकलेट सभी प्रकार की खाने पीने की सामान रखे गए हैं।

यह बत्तख यहाँ पर --

यह एक स्टेज है। यह स्टेज पर क्रिश्मस डे की पार्टी रखी गयी है।

यहाँ पर शतट सततडा भी हैं।

यहाँ पर बहोत सारी बच्चियाँ यहाँ पर ब मस्ती करते हुए दिखाई दे रहा है।

यह बस में बोहोत सारे पसेन्जर बैठते हैं। यहाँ से वहाँ सफर करते हुए दिखाई देते हैं। आप्स में ड्राईवर --